टेबल के ऊपर एक टी_वी लगाया गया है।

काउंटर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

सामने में एक मीनर भी दिखाया गया है जहां पर लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है।

बहुत सारे हरे भरे लत भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर बहोत सारे बांस नीचे गिरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे पटरे नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सभी व्यक्तियों ने जूते पहने हुए हैं।

सभी व्यक्ति जींस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे फूलों की माला भी बना के रखी गई है।

यहां बहुत सारे बोरे रखे गए हैं।

होटल का दरवाजा कांच का बना है दरवाजे पर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

सैलून का फर्श बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

पहाड़ पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पार्क है यहां पर बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं।

सामने एक वाटर स्लाइडर भी दिखाई दे रहा है।

एक लाइव बॉय का शीशी भी दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे तारे नजर आ रही है और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

यह एक होटल है होटल में लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है।

होटल का फर्श बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे कागज दिखाई दे रहे हैं।

पानी बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

कार के कुछ पार्ट इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सीढ़ी की रेलिंग को बहोत अच्छे से बनाया गया है।

सामने में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो ब्लू रंग का शर्ट और वाइट रंग का पैंट पहने हुए हैं।

यहां पर बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

सामने में एक तारा माछी भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बाजार का फोटो है जहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह एक फंक्शन का फोटो है जहां पर बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

स्टेज पर दो डी जे दिखाई दे रहे हैं।

दुकान में बहुत सारी वस्तुएं रखी गई है।

सामने एक मोटरसाइकल भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत बड़े बड़े चट्टान भी दिखाई दे रहे हैं।

यह ग्राउंड बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है ।